काया क्षेत्र मे बहुत बड़ी नदी दिख रही है| नदी के ऊपर एक विद्युत् नाव दिख रही है| जिसके ऊपर दो व्यक्ति बैठे उसे चला रहे |

छायाचित्र में एक पानी का छोटा नहाने का तालाब दिखाई --

इस छाया चित्र मे किसी पुराने भवन का घाट दिखाई दे रहा है। सिडडियाँ ऊपर से नीचे की ओर आ रही हैं।

इस छायाचित्र में किसी शादी समारोह का प्रवेश द्वार दिख रहा है। प्रवेश द्वार हरे रंग के परदों से सजा हुआ है।